झूलो के साथ साथ यहां पे जीम की भी व्यवस्था है बैठने के लिए दो बेंच हैं।

जहां पे मरीजों के बैठने के लिए सोफ़े डले हुए हैं।

यह एक ऑफिस की तस्वीर है जहां पे वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं।

ऊपर के माले में एक खिड़की दिखाई दे रही है तथा एक बालकनी बनी हुई है।

पीछे कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं।

चाय के स्टॉल के आगे हुड पहने खड़ा हुआ--

बच्चों ने अपनी वॉलीबॉल की ड्रेस पहनी हुई है एक आदमी नीचे जमीन में बैठा हुआ है।

दुकान में दोनों तरफ परदे लगाए गए हैं।

कांच के दरवाजे के ऊपर एक सफेद रंग का बोर्ड लगा है जिसके ऊपर संतोष हॉस्पिटल लिखा है यह डॉक्टर मोनी --

खंडिया द्वारा चलाया जा रहा हैं जोकि डायबिटीज और हार्ट में स्पेशलिस्ट हैं।